और ये इसका बोर्ड इस पर लगा है बि क यह बिल्डिंग काले कलर की है।

पहाड़ों को ऐसे दिखाया गया जैसे परत परत हो और आसमान खुला दिख रहा है।

यह किसी वाटर पार्क की फोटो है जिसमें काफी स्लाइडिंग दी गई है।

इसमें एक छोटे से कमरे में ट्रांसफार्मर रखे हुए है और गोल गोल रखा हुआ है।

पानी भी साफ है इस बहोत बड़ा समुद्र जैसा है।

डी_जे लाइटिंग पड़ रही है डी_जे पर और एक कुर्सी पड़ी हुई है डी_जे पर।

और चर्च को सफेद और भूरे कलर से से पुताया पुतवाया गया है।

हैं जो पर्दों पर्दे मोड़े हुए रखे हैं बिस्तर मोड़ा हुआ रखा है।

ये तमा किसी बागान की फोटो है जिसमें बहुत सारे टमाटर के पेड़ लगे हैं।

इन पे सफेद कवर पड़े हुए हैं और मेज आगे पड़ी हुई है।

एक स्वयं सा सहायता समूहो द्वारा निर्मित उत्पादो का विक्रय केंद्र है।

और इसके सामने एक ऑटो खड़ा हुआ है उसमें एक ड्राइवर बैठा हुआ है।

इसमें लोग बंदूक से प्रिपरेशन कर रहे हैं औ--

इसमें लोहे की काले कलर की ग्रील लगाई गई है और एक छोटा सा गेट आगे लगा है।

जिसमे बच्चों ने कल्चरल प्रोग्राम में हिस्सा लिया है।

उसपे जो काउंटर रखा है उसपे लिखा है फोटो स्टेट कॉम्प्लेट ।

और यह एक पेड़ पौधों स के बीच का पेट्रोल पंप --

डमी में पहनाए हुए रखे गए हैं। एक ए_सी लगी है।

जो हमें दिखाए जाते हैं और हम उन टाइल्स को जमीन में लगवाते हैं।

यह एक रोड लाइट डी_जे की फोटो है।

और बाहर एक चक्र जैसा बना है जिसमें आधी मूर्ति बनी हुई है।

और यहां पे प्रोफेसर हनीफ को खान का नंबर भी दिया गया है।